यहां पे जो है घर बने है जो की बहोत लम्बा-चौड़ा घर है और घर जो है देखनें में काफी खूबसूरत लग रहे हैं यह जो है जिला परिवहन कार्यालय पूर्णिया का घर है।

यहां पे एक सी.पी.यु कूलर भी लगे है जो की काफी खूबसूरत हैबोहोत ही शानदार है जो देखने में यह नज़ारा बार-बार नहीं मिलता है।

- -खूबसूरत लग रहे है यहाँ पे अशोका का दो पेड भी है जो बहुत ही अच्छा हरे-भरे--

यहाँ पे जो है काफी खूबसूरत जो है चमेली का फूल है जो देखने में बहुत ही अच्छा और पीले- पीले फूल भी यहाँ पे खिले हैं जो बहुत ही अच्छे नज़ारा यहाँ का ।

यहाँ पे एक ग्लैमर बाइक भी लगे हैं और हौंडा साइन बहार में जो है बाइक है वो खड़े हैं जो बहुत ही अच्छे--